यह एक अ डांस एकेडमी या किसी अ परफॉर्मेंस की तस्वीर की लग रही है यहाँ एक लड़की डांस कर रही है।

यह एक क़े-कार रिपेयरिंग गेराज है यहाँ कुछ लोग नजर आ रहे है जो कि अपनी कार बनवाने आए है यहाँ दो लोग कार बना रहे है।

यहां बहुत सारे कार्स के ऑटो पार्ट्स रखे है कुछ सामान रखे है पेचकस रखे है पीछे एक व्हाइट कलर की कार है और एक ब्लैक कलर की कार नजर आ रही --

यहाँ सामने कुछ दुकाने नज़र आ रही है जहां एक स्टेट बैंक का ए.टी.एम. नज़र आ रहा है यहां बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है पैसे निकलवाने के लिए और यहाँ बहुत सारे लोग खड़े है कुछ बच्चे भी नज़र आ रहे है।

ये एक ग्राउंड की तस्वीर है जहाँ बहुत सारे बच्चे नज़र आ रहें हैं जो की बहुत मस्ती कर रहें हैं गेम्स खेल रहें हैं। यहाँ बहुत सारी रिंग्स पड़ी हैं जिनके अंदर कुछ चीज़े पड़ी है जो उन्हें उठानी है कुछ बॉटल्स पड़ी हैं।

बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रहीं हैं साबुन सर्फ़ चॉकलेट्स कुछ चीज़े और यहाँ एक आदमी बैठे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ --